यहाँ एक टोकड़ी में बहुत सारी मछलिया रखी हुई है। इस टोकड़ी का रंग येलो है और तीन लोग खड़े हेै।

यह पिक्चर एक फील्ड का है यह फील्ड में बहुत सारे हरे-भरे घास उगे हुए हैं थोड़ी ही दूर में एक घर है या घर में कंस्ट्रक्शन चल रही हैं।

यह औरत के सामने बहोत सारे कस्टमर खड़े है| एक कस्टमर ने मास्क पहन रखा है यह औरत के बगल में एक और मछली की दूकान है जिसमे एक और आदमी बाट कर रहा है।

घास और झाड़िया है। थोड़ी ही दूर मै बहुत सारे मकान है और यह मकान से थोड़ी दूर में बहुत सारे हरे भरे पेड़-पौधे भी है।